ड्राइंग दिखा रही हैं जिसमें की दो बच्चियाँ चश्मा पहनी हैं दो बिना चश्मा की है।

व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हैं ये लोग ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हैं।

यह एक सुंदर दुकान है दुकान में बहुत सारा लाइट लगा हुआ है।